जैसे कि आप ये यहां पर देख सकते हैं हमें यहां पर मुजफ्फरनगर का मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा है। यह एक घर की तरह दिखाई दे रहा है जो एक हवेली जैसा लग रहा है।

यहाँ पर काफी सारे गमले भी लगे हुए हैं। यहाँ पर हमें काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं। जिनपे अलग-अलग डिजाइन से कटिंग की गई है।

जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर एक बोहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

जैसे कि आप पर यहाँ देख सकते हैं हमे सामने कि तरफ एक दुकान दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें काफी सारे बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।